और बहुत सारा बेग है।

बनाने के लिए बहुत सारा बालू है।

पर स्कैनर भी रखा हुआ है।

अंदर जाने के लिए गेट दिखाई दे रहा है।